और एक घड़ी भी लटकी हुई है।

इस हॉल में एक खिड़की भी बने हुए है।

जिसके हाथों में आग का एक बड़ा सा दंड भी--

कुछ डिबिया प्लास्टिक में पैक हैं।

जैसे चूड़ी का डब्बा शैंपू --

इस दुकान मे बहोत सारे छोटे से बड़े लेकर एक के ऊपर एक टायर सजा कर रखा हुआ है।

इसमें एक सोफा भी रखा हुआ है।

इसके गेट का कलर ब्राउन है।

उसे मकान में खिड़की बने हुए हैं।

यह एक खुले अस्थान का दृश्य से है इस अस्थान के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और पानी भी बह रहे हैं थोड़े थोड़े।

और अंदर में व्हाइट है इसके चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस बिल्डिंग के बाहर एक लाल कलर की ट्रैक्टर भी पार्क की हुई है।

इस दृश्य में बहुत सारे बिल्डिंग्स है सभी बिल्डिंग्स अलग-अलग प्रकार के और अलग-अलग कलर के हैं।

यह एक कमरे का दृश्य है कमरे के दीवार का कलर पर्पल और वाइट है।

इस कमरे में एक एल_सी_डी टी_वी भी लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे कार्टून में आलू रखे हुए हैं।

कार्पेट पर बहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं।

यह एक मंदिर का दृश्य है मंदिर की दीवार का कलर व्हाइट है।

मंदिर के दीवार पर एक झंडी भी लटकी हुई है।

इसके सीलिंग में पांच ट्यूबलाइट लगे हुए हैं और एक सर्कल वाले बल्ब लगी हुई है।

और बहुत सारे लड़कियां नीचे जमीन पर बैठी हुई है।

यहां पर एक उजाला कलर का मकान भी है।

उसके पीछे एक टूल रखा हुआ है।

टूल पर एक प्लास्टिक की बाल्टी भी है।

यह एक मकान का दृश्य है मकान का दीवार का कलर लाल है।